हाँ पर कोई किसान मछलीया भर्ती होगी।

और पूरा दिन आपको थकावट या किसी और प्रकार का टेंशन नहीं होता है।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

और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे दाढ़ी बनवाते होंगे अच्छी-अच्छी कटिंग करवाते होंगे।

चर्च का सीन अ प है

यहां पर गरीब-गरीब लोग रहते हैं गांव देहात के लोग रहते हैं जो बहुत ही सच्चे दिल के होते हैं यह बहुत ही अच्छे होते हैं।

और ग्राउंड में बाल अ रेत भी हैं थोड़ा--

जैसा कि आप देख रहे है यह एक

जैसा कि आप देख रहै है यह एक संथाल परियोजना पर्व है।

और ए ठेले की मदद से लाये गए हैं और एक व्यक्ति धान को अपने --

और एक झंडा भी है बहुत ही बढ़िया हैं।